यहाँ पर यह बग़ीचे में किसान भाई बहुत ही मेहनत से फसल लगाए हैं।

यह सड़क के किनारे बहोत बड़े पोस्ट ऑफिस है। यह पोस्ट ऑफिस में बोहत सारे आदमी यहाँ पर बैठते है यहाँ पर बहोत सारे काम किये जाते --

यहाँ पर बोहत तरह तरह के किताब कॉपी रखे जाते है यहाँ पर यह दुकानदार में है यह दुकानदार है

इस में बहुत सारे लड़का एवं लड़की एवं जेंट्स एवं लेडीज सब कोई यहाँ पर बैठे है एवं खड़े है ।

यहां पर बहुत से आदमी यहां पर कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं कपड़ा खरीद --

यहां पस टोपी एवं खांचा एवं कलश सारे चीज बांस के बनाए गए हैं।

यह समानों पर बहोत सारे लड़का लड़की यहाँ पर यह खेलने की चीज़ पर चढ़ कर खेलते हैं यहाँ पर बहोत सारे पेड़-पौधे भी हैं।

यह मकई हम लोग इसको भुट्टा कहते हैं यह भुट्टा चूल्हे पर पका करके खाते हैं।